जिसमें हिन्दू रिलीजन पाठ पूजा वगैरा करते हैं।

और अगल-बगल ढेर सारे पेड़-पौधे हैं और सूरज है येलो कलर का जो कि ये सुबह की फोटो है सुबह में येलो कलर का सूरज निकलता है।

और यहाँ पर ढेर सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं पुरुष बैठे हुए है।

मतलब उसपे पोलोथिन लगा रहें हैं ताकि वो शाइन और अच्छे से खूबसूरती से --

इमेज में देख सकते हैं ढेर सारे बच्चे स्टेज पे बैठे हुए हैं छोटे-छोटे बच्चे करीबन नौ दस साल के बच्चे होंगे और ये हाथ में कुछ कागज वगैरा लिए हुए हैं और इनके पीछे चार आदमी खड़े हैं।

इस इमेज में हम देख सकते हैं हमारे सामने एक बहुत खुबसूरत सा गार्डन है पतली सी रोड है और यहाँ पे हम टहलने के लिए आ सकते हैं सुकून पाने के लिए आ सकते हैं।

इमेज में हम देख सकते है बहुत ढेर सारे मुसलमान भाइयों यहाँ पे नमाज पढ़ रहे है।